दुकान में बहुत सारा सामान है।

यहां पर नीचे बहोत सारे मैट बिछाए हुए है।

बोर्ड में फूड ट्रेक लिखा हुआ है।

चित्र में एक सफेद कलर का कमरा दिख रहा है।

उसके सामने मारुति सुजुकी का बोर्ड लगा हुआ है।

ऑटो वाले के पीछे एक सफेद कलर की कार है।

यहां पर मुर्गियों को जाली में बंद किया हुआ है।

चित्र में सामने बहोत सारी बाइक और स्कूटी खड़ी हैं।

जिसमें से तीन नाई दिख रहे हैं।